आसपास बहुत सारी गाड़ियां नजर आ रही है एक रिक्शावाला जाता नजर आ रहा है दो सवारियों के साथ एक बंधन बैंक --

कुछ छे सिस्टरस ने एक जैसी साड़ी पहनी है और एक सिस्टर ने वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है ये बिल्डिंग पीले कलर की नजर आ रही है आसपास घांस फूस भी नजर आ रहें हैं।

है दो आदमी नजर आ रहे है सामने खड़े हुए जिन्होंने जेकेट्स पहनी हुई है जींस पहने हुए हैं।

ये एक फंक्शन का अ सामने का गेट है जो की हरे अ हरे कलर से बनाया गया है आस-पास बहुत सारे अ डेकोरेशन की गई है।

कंप्यूटरस नज़र आ रही है एक फैन नज़र आ रहा है विंडोस नज़र आ रही है कुछ फ्रेमस नज़र आ रहे हैं।

इनको बहुत प्यारे तरीके से सजाया हुआ है कुछ झालर तरीके से दिया हुआ है और व्हाइट कलर का है ये आसपास बहुत लोग नजर आ रहे।

बहुत सारे फूल नजर आ रहे है आसपास गिरे हुए।

ये एक जंगल है जहाँ पे बहुत सारे बड़े-बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं उसपे एक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा है वहीं नीचे में एक आदमी खड़ा नजर आ रहा है जिसने बैग टँगाया हुआ है।